मनोरंजन मिलते हैं देख सकते हैं काफी मस्त आप लोग को दिखाई दे रहा होगा झूला वगैरा।

चारों साइड में हरे-भरे पेड़-पौधे हैं देख सकते हैं।

बहुत सारा लाइट वगैरह सब कुछ लगे हुए है और यह पिंक कलर से --

पानी है देख सकते हैं कितना गहरा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा।

नीचे ट्रेन जा रहा है उसके ऊपर में।

ब्लू कलर का शर्ट वाला वो सब को सीखा रहा है

लोग के नजारा दिखाई दे रहा होगा।

और पहाड़ साफ दिखाई दे रहा है लग रहा है कि बादल छट गया है।

तो वो मिस्त्री का जुगाड़ दे रहा है आप देख सकते है अब इस को भी दिखाई दे रहा होगा।

बहुत ही बिजली दुकान का सब चीज दे देख सकते हैं।

जहाँ का मिशन का सोचे साइड मशीन सोचे साइड मशीन सोच --

हाल ही में ये खुला हुआ है देख सकते है ये उद्घाटन किया हुआ --